ये एक मेला है यहाँ पे मिकी माउस लगा हुआ है जिसमें बच्चे झूल रहे हैं और कुछ बच्चे कार वाला झूला झूल रहे है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

मेले में घूमने आए हुए हैं और यहाँ पर एक पेड़ भी है।

ये एक बॉय है ये सेल्फी ले रहे हैं बॉय ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है और आजू-बाजू ब्लैक कलर एक ब्लैक कलर का कबर्ड रखा हुआ है और सामने मिरर में एक कोई एक दिख रहा है।

बहुत सारे छोटे-छोटे से मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे एक रेड कलर का एक येलो कलर का और यहाँ पे आग जल रही है।